और इन्हे भारत के राष्ट्रपिता होने की उपाधि भी दी गई है इस तरह के स्थान हमारे यहाँ देखने को मिल जाती है।